यह एक लाइब्रेरी है और वहा पे जाने के लिय सीडिया है तीन-चार और --

यहा एक बड़ा गेट दिख रहा है वो गेट बंद है गेट के अंदर अ बड़े बड़े पेड़ पौधे है और बाहर रेड और येल्लो गट्टू लगे हुए है।

रोड है और उसके बाजुमे हरा हरे भरे झाड़ है।

पानी का एक --

और वो स्केलेटन के ऊपर एक लाइट दिख रहा है और वो स्केलेटन काच में रखा है।

और बड़े बड़े पेड़ है और ग्रीन घास दिख रही है और आसमान दिख रहा है।

यह एक सर्विसिंग की दुकान है और यहाँ पे बहुत सारे स्कूटी बाइकस और एक लडका बाइक रिपेयर कर रहा है।